इस मस्जिद के सामने एक कच्चा घर है जिसका कार्य अभी चल रहा है और साइड में एक खाली खेत पड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ी झील या एक तलाब जैसा लग रहा है।

यह एक बिल्डिंग है जिसके बाहर गंगारामपुर म्युनिसिपालिटी का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक मेगा मार्ट का दृश्य है जहां पर अभी कार्य चल रहा है।

तथा साइड में कुछ जरूरी कागज रखे हुए हैं और एक ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे ई मित्र के कार्य भी किए जाते हैं।

यह इमारत वास्तव में एक अनोखी इमारत जैसी लगी हुई है क्योंकि यह पत्थरों तोड़कर जमीन के निचले हिस्से में बनाई हुई है।

इस छवि में साइड में एक बैठने के लिए चेयर रखी हुई है।

और यहां पर एक लाल टी शर्ट में बंदा खड़ा हुआ है।

इसके साइड में एक कैमरा दिखाने वाली एल_ई_डी रखी हुई है।

जंगल में हमें हिरण की प्रजाति जैसे कुछ जीव दिखाई देते हैं जिसमें सिंघा भी है।

इन टाइल्स का प्रयोग जमीन में या फर्श पर बिछाने के लिए किया जाता है।

यह एक पुरुष की फोटो है जिसने अपनी सेल्फी ली हुई है।

जहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है।

यह प्रोग्राम साईं ज्योति संस्था द्वारा आयोजित किया गया है जहां पर बॉस शिल्प सामग्री और आचार या मुरब्बा की प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखा गया है।

और इसका मेन गेट किसी फूलों की माला से सजा हुआ है।

यह छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक उपयुक्त जगह है।

इस बगीचे में एक महिला है जो सभी पेड़ पौधों को पानी दे रही है इस बगीचे में एक वाइट लाइट लगी हुई है।

विभिन्न तरह की रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं जिससे यह होटल जगमगा रहा है।

के अंदर यात्रीगण बैठे हुए हैं और एक यात्री इस बस में चढ़ रहा है।

ये स्थान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।

यह एक डांस क्लब का सीन दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं।

जहां जहां पर चार लड़कियां और एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है ये सभी नाच रहे हैं।

यह खेल का मैदान है जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

जहां पर दो मजदूर वर्ग के लोग एक गाड़ी पर पत्थर को रखकर ला रहे हैं ये सभी मार्बल के पत्थर लग रहे हैं।